यह रोड है। यहाँ गाड़ी मोटरसाइकिल साइकिल सब चलता है। यहाँ अगल बगल में रो बहुत सारे पेड़-पौधे हैं। बढ़िया लग रहा है देखने में।

बढियां एक तरह से केश काटा जाता है। बहुत ही बढियां सैलून है ये। यह साइड सैलून है बहुत ही तरह तरह के डिज़ाइन के यहाँ केश काट कटाता है बहुत ही बढ़िया है सैलून ये। यह लोहापट्टी में स्थित सैलून है। बहुत ही बढियां सैलून है ये।

बहोत ही बड़ा योगा का स्थान है | यहाँ बहोत सारे लोग योगा कर रहे हैं | बहोत ही बड़ा यहाँ --